और यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की घास भी दिखाई दे रही है ऊपर असमान भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें मैरिज हॉल व गार्डन दिखाई दे रहा है और जहां पे बहुत सारे चेयरे लगी हुई है डाइनिंग टेबल जैसा बना हुआ है।

और कुछ वर्क कर रहे है कुछ बैठे हुए है कुछ खड़े हुए है और आस-पास भी यहां पे लाइटे भी लगी हुई है और स्कीन भी यहां पे चल रहा है।

यहाँ पर हमे एक बुक्स की दुकाने दिखाई दे रही है।